जिसके बाहर तीन आदमी खड़े हैं और एक मेज भी बाहर दुकान के रखी हुई है जिसपे एक आदमी शॉल ओढ़े बैठा हुआ है।

इस चित्र में बोहोत सारे खम्भे लटके हुए है और एक खम्भा तो टेढ़ा भी हुआ- हुआ है। बोहोत सारी तारें भी लगी हुई हैं।

इस चित्र में एक पुरानी सी बिल्डिंग है जिसके पास में घाँस भी लगी वी है और एक गाड़ी भी खड़ी है और इंठों से बना गमला भी है।